इस फोटो में एक बिल्डिंग दिख रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर माही रेस्टोरेंट वेज और नॉनवेज लिखा हुआ है।

सामने सीढ़ी पर एक बच्चा ऊपर जाते हुए दिख रहा है बिल्डिंग के बाहर एक ब्लैक कलर का सिलेंडर पाइप पार्क है बिल्डिंग में बहुत सारे। शट्टर भी लगे हुए हैं।

सामने चार पांच रेड कलर का बॉक्स भी रखा हुआ है उसके पीछे एक छुहारा का बॉक्स भी रखा हुआ है।

इस फोटो में किराना का दुकान दिख रहा है सामने एक काउंटर है जिसके ऊपर बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पेंसिल और खाने के सामानें रखी हुई हैं।

इस फोटो में एक सड़क दिख रहा है सड़क के सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

बीच में बहुत सारे पटरी दिख रहे हैं जिसके ऊपर चार पांच ट्रेन आते हुए दिख रही है।

बिल्डिंग के बाहर बहुत सारा स्कूटी और बाइक पार्क हैं और दो आदमी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में एक सड़क दिख रहा है सड़क के साइड में एक बहुत बड़ा घर है इस घर के दीवार का कलर येलो टाइप है और वाइट भी है।

नीचे एक टेबल रखा हुआ है साइड में बहुत सारे पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है।

उसके सामने एक चेयर दिख रहा है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

आसपास बहुत सारे इंसान खड़े है और दो तीन इंसान हाथ मे गन लेके हुए शूट कर रहे है।

इस फोटो में एक जंगल दिख रहा है जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं।

पार्क में बहुत सारे आदमी और उसके उनके कुत्ते भी खड़े हुए हैं।

फैक्ट्री के नीचे बहुत सारे गाड़ी और पार्क हैं और एक दो इंसाने भी दिख रहे हैं।

ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है सामने शेल्फ पर एक टी_वी दिख रहा है।

लड़का एक ऐनक पे देख रहा है और वहाँ पे एक डोर बना हुआ है।

इस फोटो में एक शॉप दिख रहा है जिसके ऊपर तेजा बुक स्टॉल लिखा हुआ है सामने एक वाइट कलर का जींस पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ है।

और एक रेड कलर का पोल भी दिख रहा है पीछे बहुत सारे पेड़ और पौधे भी दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने छोटा सा और बिल्डिंग है जिसके ऊपर बहुत सारे कांच लगी हुई है और व्हाइट कलर का वो भी बिल्डिंग है।